यह दुकान है और दुकान में पोस्टर लगा है दीपावली का और यहां पे हर चीज का सामान बिक रहा है दीपक भी बिक रहा है दीपावली का सामान यहां पे सारा उपस्थित है।

यह ऑटो का गैरेज है यहाँ पर ऑटो बिकता है और पूरा बैलून से सजाया गया है यहाँ पे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है और बैटरी वाला ऑटो है जिसपे फूल भी लगाया गया है।

यहां पर बहोत सारा बड़ा बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है लोग यहां घूमने आते है और हरा भरा पेड़ पौधा है बिजली भी लगी हुई है |

यहां गोल दिखाई दे रहा है यहाँ एक बाइक है और और बाइक अंदर भी लगा हुआ है।